ऑफिस का चित्र दिख रहा है यहां पर कुछ लोग--

यहां एक नदी का एरिया दिख रहा है नदी में पानी दिख रहा है बोट दिख रही है नदी से।

अशोक के पेड़ है और सामने गार्डन लगा हुआ है और अभी वो बंद है।